कर रहा है ये घर में पाइप से पानी से धो --

और यहाँ यात्रियाँ भी बहुत हैं।

यहाँ बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा है यहाँ नृत्य कर रही है लड़कियाँ।

और देखने में काफी खूबसूरत लग --

स्टेज है। यहाँ दूल्हा दुल्हन का--

अ अ जय माल बहोत ही अच्छा स्टेज को फूलो से --

फिर से पेंटिंग कर रहे हैं हूं --

और यहाँ पे लॉटरी सेण्टर भी है।

और य बहोत ही अच्छा से रक्खा हुआ है सजा --

पुण्य से आत्मा की शांति मिलती है।

स्कूल के बच्चे कुछ पेंटिंग वगैरा कर रहे हैं। इसमें टेबुल लगा के सब बच्चे एक दूसरे के सहायता ले करके कर रहे हैं। उसको काट पीट के कुछ बनाएंगे अच्छे से।

दूधदही घी पनीर ये सब पनीर सब्जी बनाते हैं। दूध हम लोग पीते हैं तो प्रोटीन मिलती है। बहोत ही अच्छा है ये जगह --